और बिचमे एगो गोल -गोल घिरनी के तरह चरकर ब और ओक अगल-बगल मे हरा-हरा है एके और दूर शेर स्टैचू है मूर्ति बना --

शाम या सुबह के मौसम होते और बहुत दूर-दूर पानी --